तो दोस्तों देख सकते हैं यह एक मिठाई की शॉप है जहाँ पे काफी सारे महंगे महंगे मिठाई मिलते हैं।

सामने ही एक सॉश रखे हुए है एक दो आदमी यहाँ पे मिठाई लेने आए हैं।

पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो एक हाथी है और यह एक पार्क में जिसपे काफी सारे खिलोने लगे मैं है।

पीले कलर के मकान हैं जिससे दो-दो पतियाँ पाइप के लगी हुई है सामने अम बहोत बड़ा--

और सामने की तरफ पीले मकान की सामने आगे की तरफ एक ठेला है और उसके पीछे दो--

सामने तरफ आर_ओ लिखा हुआ है आगे कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा।

क्योंकि उजड़ा सा एक बाढ़ से गिरा हुआ जिसके अन्दर आप जा नही सकते--

काफी सारे कैंडी जो है रखे हुए है काफी सारे हेयर कलर रखे हुए हैं सेम्पू --

और एक-दो केले के पेड़ छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं जो काफी अच्छे लग ड़हे हैं।

तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे --

खाने पीने की दुकान है होटल जैसा वहाँ पे एक ए_सी भी लगा हुआ है फैन लगा हुआ है ऊपर में काफ़ी सारी सीलिंग लाइट्स भी लगी हुई हैं।

मुझे आई थिंक वो काफी अच्छी जगह है देहली की --